सामने एक बिल्डिंग नजर आ रहा है जिसका कलर गुलाबी और व्हाइट दिख रहा है और बाहर में बहोत सारे गाड़ियां खड़ी हुए हैं अंदर में बहोत सारे लोग दिखाई दे--

एक आदमी बैठा हुआ नजर आ रहा है और बहुत सारे आजू बाजू में पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और एक खिड़की नज़र आ रहा है और जस्ट बाजू में आपका चैनल गेट नज़र आ रहा है जिसका कलर व्हाइट है।

सामने एक बाइक में लड़का दिखाई दे रहा है पीछे कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे है और सामने का गेट का कलर व्हाइट एंड ब्लैक दिख रहा है।

और दो गाड़ी और साइड में खड़े हुए--

सामने बहोत बड़े बड़े चट्टान नजर--

उसमें भी दिखाई दे रही है चट्टान का कलर ब्राउन नजर आ रहा है।

और सामने में दो लोग दिखाई दे रहे हैं जिसका एक--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

सामने एक सब्जी दुकान नजर आ रहा है जिसमें तीन लोग बैठे हुए हैं पीछे बहुत सारे कैरेट रखाया हुआ है जिनका कलर येलो --

एक बिल्डिंग नजर आ रहा है दुर से।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

सामने एक बड़े बड़े चट्टान दिखाई दे रही है जिसमें झरना बहता हुआ नजर आ रहा है नीचे बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

में तीन पेड़ बड़े बड़े नजर आ रहे हैं उसके पीछे बहोत बड़ा सा तलाब नजर आ रहा है।

में एक ग्रिल लगी हुई है उसका कलर व्हाइट दिख रहा है एक जमीन नज़र आ रही है जिसका कलर ब्लैक लग रहा है।

पीछे दीवाल में एक ए_सी लगा हुआ है व्हाइट कलर का ऊपर में बहुत सारी लाइट ही नजर आ रहे हैं दो व्हाइट कलर की परिचे दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें बहोत सारी खिड़कियां लगे हुए हैं एक आउटडोर लगा हुआ है ए_सी का बहोत सारे गाड़ियां दिखाई दे रही है।

सामने एक सिल्वर कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी रायपुर लिखा हुआ है।

सामने बहोत सारे मार्बल के पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दीवाल में एक भूत की तस्वीर दिखाई दे रहा है।

अ एक सी_डी दिखाई दे रही है जिसका कलर व्हाइटनर नजर आ रहा है ऊपर टिने में टिने का कलर ब्लू नजर आ--